और कुछ बाइक वगैरा खड़ी हैं कुछ व्यक्ति खड़े हैं।

यहाँ पे बन रहा है घर।

और पीछे में पंख लगा हुआ है और दो चार बच्चे हैं जो देख रहें हैं सर क्या कर रहें हैं।

यहाँ पे कुछ लड़के हैं जो क्रिकेट खेल रहे हैं और साइड में बड़ा सा घर है । जिसको व्हाइट कलर रेड कलर से कम्पलीट किया गया है ।

यहाँ पे आप देख सकते हैं और यहाँ पे एक पुल है जहां पे कुछ व्यक्ति हैं पुलिस हैं जो की जा रहे हैं।